पोस्ट ऑफिस दिख रहा है जिसकी दिवाले पीली चंदन कलर और लाल कलर से स-सजाया हुआ है ऊपर की छत सीमेंट की छ अ टीन की दिखाई दे रही है पीछे में एक पेड़ दिख रहा है।

मैदान में लाल पीली मिट्टी बताई गई है और कुछ पता के यहाँ सजाया गया है जो हरे लाल पीले और लाल रंग के है धनयवाद।

और रोड़ों पे आवागमन लोगो का चालू हैधन्यवाद।

अपानी के दुकान के सामने एक लोहे के ऐंगल पे एक आदमी बैठा हुआ दिख रहा हैं औ लोक आवागमन इधर से उधर करते हुए दिख रहे हैं धन्यवाद।

इलेक्ट्रिक खंभे जो रेल्वे गाड़ी को पास करते हुए इलेक्ट्रिक सप्लाई का खंभे दिख रहे हैं और नीला आसमान दिख रहा हैंधन्यवाद ।

प्लेटफॉर्म दिख रहा है प्लेटफॉर्म में इधर एक स सफेद कलर के पूरी ए अ जमीन दिख रही है।

और चारों तरफ पूरी ट्रैक ही ट्रैक बिछी हुई है ट्रैक के आजू बाजू में हरियाली या हरियाली हरे पेड़ दिख रहे हैं आजू बाजू मे पहाड़ दिख रहे हैं आसमान में बादल छाए हुए दिख रहे हैं धन्यवाद ।